मस्जिद में सामने दो खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं। पीछे एक घर दिखाई दे रहा है। सामने मैदान है। एक गेट बना हुआ है।

कही सूखे पेड़ लगे हैं और कही पहाड़ियों पर हरी-भरी घास और बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ऊपर खुला आस --

यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है और रूम में एक व्यक्ति मशीन पर --

इसमें बहोत सारे मीनारें बनी हुई हैं और गुमंद बनी हैं। सामने सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं।

सामुदायिक स्वास्थ केंद्र दिखाई दे रहा है। जिसके सामने बहोत सारे पोस्टर लगे हैं। एक व्यक्ति खड़े हुए है।

साइड में जिसमें बड़े-बड़े पेड़ लगे हैं।